यह किसी फंक्शन की तैयारी हो रही है यहां पे।

इस चित्र को देखने से यह पता चलता है यह किसी सरकारी कार्यालय का चित्र है।

इसके पीछे भी बहुत सारे अलग अलग तरह के वाटर पार्क जिसको अच्छे से इंज्वॉय करने के लिए लोग यूज करते हैं।

जिसमें लगभग बहुत सारी सीटें हैं।

इसमे बहोत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के वस्त्र पहने हुए हैं।

इस चित्र में दिख रहा है यह किसी पोर्ट का दृश्य इसमें दिख रहा है और वो भी रात्रि के समय में।

इसमें चारो तरफ लाइट लगी हुई है यह रात का सीन है।

सभी यहां पे सायद प्रे कर रहे हैं।

लगी हुई है वास रूम के सामने।

और यह व्यक्ति अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है।

इसकी आकृति बहुत ही सुंदर है। इसमे बहुत सारे ब्यक्ति खड़े हैं और बहोत सारे वाहनो वाहन भी यहाँ पे खड़े हुए है।

इस व्यक्ति की फोटो क्लिक की गई है जिसमें बहोत सारी सामग्री रखे हुए सामान के जो की चित्र में दिख रही है।

और सामने उसके एक इंस्ट्रक्टर की तरह दिख रहा हैं।

इसमें आगे इसमें लिखा हुआ न्यूट्रिशन --

और यहां पे गेंदा फूल का जो है दो प्रकार देखने को मिल रहा है तीन प्रकार।

एक व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ है एक व्यक्ति के हाथ में साइकिल ह--

इस चित्र में दिख रहे भगवान जगन्नाथ की यात्रा--

बहुत सारे व्यक्ति आशीर्वाद लेते हुए दिख--

इसके अंदर का दृश्य देखने की बात करे तो इसमें कुर्सियां लगी हुई है और एक कंप्यूटर सेटअप भी लगा हुआ है।

और पीछे बहुत सारी झाड़ियां पेड़ हैं।

इसके सामने पेड़ भी लगे हुए हैं।

इसमें बहुत सारे व्यक्ति ट्रैवल कर रहे है जिसमें सामने एक औरत और दो व्यक्ति एक साथ ट्रैवल कर रहे है।

सामने दिख रही चित्र में यह कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह किस चिज की मार्केट है।

यहाँ पे व्हाइट कलर का मेज एक येलो कलर का मेज रखा हुआ है।

यह दुकान के आगे लिखा हुआ है लाल रंग का साहेब एंड साहिबा।